काला-काला भी दिखाई दे रहा है और रात का समय है जो कि धुंधला हुआ है और जमीन सब भी अच्छे से दिखाई नहीं दे--

यह एक बहोत बड़ा किला दिखाई दे रहा जो की पुराना है और कुछ उखड़ा-उखड़ा भी दिखाई दे रहा है और यह बहोत बड़ा मैदान है जोकी बहुत ही हरे-भरे घास दिखाई दे रहे है।

यह एक स्विमिंग पूल है जिसका पानी का रंग --

ओ व्यक्ति किसी दूसरे तरफ को देख रहा है एक बुजुर्ग व्यक्ति नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कुर्सी भी बगल में है।

यहां पे बहुत सारे मूर्ति बनाए गए हैं जैसे कि हाथी के उसका दांत भी बनाया गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है उसके आगे पीछे लोग घूम रहे हैं और ऊपर में झंडा भी गड़ा हुआ है ।

यह एक मैदान है जोकी बहोत से लोग एक जगह इक्कठे हुए है ऐसा लग रहा है की खेलते नज़र आ रहे है।